कैफ़े के अंदर दिखाई दे रहा रखा हैं उसके अंदर बहुत सारा टेबल्स और चेअर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

नमक भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सोफा के ऊपर बैग और हेलमेट रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक एंट्रेंस गेट दिखाई दे रहा है।

उसके अंदर एक गाड़ी पार्किंग किया हुआ दिखाई दे रहा है।

और आगे जाकर एक पिकअप गाड़ी दिखाई दे रहा है।

जिसके अन्दर बहोत सारा इंसान इकट्ठा होकर दिखाई दे रहा है।

और छत पर लाइट्स जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर बहोत सारा टीना रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पी_सी_यू रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसके बाहर बहुत सारे इंसान के क्राउड दिखाई दे रहा है।

टेबल रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक दुकान के अंदर दिखाई दे रहा है।

उसके अंदर प्लाई बोर्ड से बना हुआ बहुत सारा ड्रायर्स दिखाई दे रहा है।

रस्सी के रूम भी दिखाई दे रहा है।

और चर्च के बाहर फैंसिंग दिखाई दे रहा है।

और के साइड में घर दिखाई दे रहा है।

होटल यामा फूडिंग एंड लॉजिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और बिल्डिंग के अंदर से इंसान बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।

बंबू दिखाई दे रहा है।

और उसमें दिखाई दे रहा है।

मुझे यह एक रेस्टोरेंट के अंदर दिखाई दे रहा है उसके अंदर--

टेबल्स और चेयर रखा हुआ दिखाई दे रहा है टेबल के ऊपर टेबल मैट और समान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।